कुछ बड़े बड़े पेड़ पौधे भी नजर आ रहे हैं ।

जिम का अंदर हमें कुछ ग्लास ए_सी और पोस्टर्स लगे हुए भी नजर आ रहे हैं।

हरे हरे रंग के बड़े बड़े पेड़ भी नजर आ रहा है।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

साथ में हमें एक हरे रंग का बड़े से पेड़ भी नजर आ रहा है और एक करेंट का इलेक्ट्रिकल पोल भी नजर आ रहा है।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

इस छवि में हमें कुछ छोटे छोटे पेड़ और पौधे भी नजर आ रहे हैं।

हॉस्पिटल का डेस्क का ऊपर हमें एक सैनिटाइजर का बॉटल भी नजर आ रहा है।

वहां पे हमें बहोत सारे चेयर और टेबल पे रखा हुआ है और कुछ टिशू पेपर्स भी रखे हुए हैं।

इच छवि में हमें एक दुकान नजर आ रहा है।

इस छवि में हमें एक बड़ा सा हॉस्पिटल दिखाया गया है।

एक ए_टी_एम भी नजर आ रहा है।

वहां पर हमें एक डेस्कटॉप भी नजर आ रहा है।

बहुत सारे फैन भी नजर आ रहे हैं।

इस छवि में हमें एक बड़ा सा मंदिर दिखाया गया है।

छवि में हमें एक बड़ा सा बिल्डिंग नजर आ रहा है।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

तभी में हमें बहोत सारे गारिया नजर आ रहे हैं।

कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं।

दूर में हमें कुछ बड़े और छोटे बिल्डिंग और घर भी नजर आ रहे हैं।

इस छवि में हमें एक सुंदर सा बिल्डिंग नजर आ रहा है।

वहां पे हमें एक पीतल का बर्तन भी नजर आ रहा है साथ में एक लाल कलर का कारपेट भी नजर आ रहा है।

यहाँ पे हमें एक जेरॉक्स मशीन और कंप्यूटर्स भी नजर आ रहे हैं।

दूर में हमें एक बहुत सुंदर सा बड़े बड़े पत्थर और पेड़ भी नजर आ रहे हैं।